और एक बहोत बड़ा हाल है और यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और यहां पर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहां पर काफी भीड़ है आसपास काफी व्यक्ति हैं महिलाएं हैं।

उनमें कुछ डिब्बे से रखे हुए हैं।

और यहां पर कुछ मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं।

और यहां पर सामने इस घर में काफी सारे कमरे से बने हुए हैं।

और इस रूम के अंदर एक बेड रखा हुआ है उसे पर सफेद कलर की चद्दर बिछी हुई है।

यहां पर कितने ही सारे शटर से लगे हुए हैं।

जिसमें साइड में लाइट बली हुई है।

और इस जिम मे काफी सारी जिम करने की मशीने रखी हुई है।

और यहां पर तोतो के खाना भी पड़ा है।

और इस पैलेस में काफी हरियाली है।

यहां पर सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

यहां पर आसपास काफी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और ये यहां पर बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है श्री मंदिर हनुमान टिल्ला हनुमान धाम।